किसी फैक्ट्री के अंदर एक आदमी कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ लोहे की कई सारी मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे की तरफ एक टीना से एक खंडा बनाया गया है।

यह लड़कियां और औरतें इस चबूतरे के पास फोटो खिचाते हुए नजर आ रही हैं चबूतरा पत्थर से बने हुए गोलाकार खंभे के नीचे लगा है।

एक काले रंग की गाय दिखाई दे रही है जो कि किसी घर में खड़ी हुई नजर आ रही है। पीछे की तरफ लकड़ी का गेट दिख रहा है और एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहा है। औरत ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है और आदमी ने ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लैक कलर की कैप लगा रखी है।

यहां पर किसी हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर सामने की तरफ काउंटर बना हुआ है जिसके पास अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है और काउंटर के बाहर भी दो आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। काउंटर पर मे आई हेल्प यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

किसी पैलेस का एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जिसके गेट पर नीचे की तरफ पिंक कलर का टेंट भी लगा हुआ नज़र आ रहा है।

अंदर एक काउंटर है जिस पर काँच लगा हुआ है। उसके अंदर कई सारे रैक बने है जिस पर कुछ बिस्किट नमकीन और कुछ चिप्स के पै पैकेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनमे से एक ने वाइट मास्क लगा रखा है।

पर एक रोड दिखाय दे रही है जिसके दोनों तरफ काफी घना जंगल नजर आ रहा है। रोड के एक तरफ रेलिंग लगी हुई है और दूसरी तरफ ढलान दिखाई दे रही है। जिस पर कुछ बड़े-छोटे पेड़-पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइन से स्त्रीटलाईट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

बाउंड्री वॉल के बाहर कुछ छोटे-छोटे पौधे और घास उगी हुई नज़र आ रही है कुछ कचड़ा भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है। जिसके बीच में चार केबिन बने हुए नजर आ रहे हैं। यह हॉल किसी एयरपोर्ट का लग रहा हैं। पीछे की तरफ कई सारी ट्रॉली भी लाइन से जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये सब जमीन पर बैठकर कुछ झुके हुए नजर आ रहे हैं सामने की तरफ दीवार दिखाई दे रही है और उसके अंदर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

किनारा स्टोर दिखाई दे रहा है जिसके दोनों तरफ लकड़ियो के रैक खड़े हुए दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ दीवार से लगा कर लकड़ियो का रैक बना हुआ नज़र आ रहा है। इन रेक मे काफी सारे खाने बने हुए है इन पर काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है।

सामने एक काउंटर टेबल रखी हुई है जिस के ऊपर एक कैची रखी हुई हैऔर एक पेन रखा हुआ नज़र आ रहा है।

सामने की तरफ ब्लू और वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है और अंदर पिंक और वाइट कलर का टेंट लगा हुआ दिख रहा है। नीचे रेड कलर की मैट बिछी हुई दिखाई दे रही है।